एक काली पेंट है सफ़ेद सी टीशर्ट दिख रही है बठीने एक आदमी ने काली टीशर्ट एक आदमी बठीने जा रहियो है खासा आदमी मार्केट आ रहियो है।

एक गाड़ी अठिन हैं फोन पे आरी स्टीकर के लाग रो है एक आदमी माइन बैठो है लकड़ी सी बांध मेली है बड़ी सी अठिन लाइट चालू है।

एक ये लोहें का गेट है कोई घर मकान का काम चल है नया गेट लगायो है।

यह आदमी बोट को आगे ले जा रहा है साम पहाड दिख रहा हे पानी है।